यहां पर बहुत सारे बाइके के भी खड़ी हुई दिखाएं--

गार्डन के पास बहुत बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं गार्डन में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इसकी छत हैं टीनों से बनी हुई दिखाई दे रही है इसका शोरूम का गेट शीशों से बना हुआ दिखाई--

ये सामने एक सैलून दिखाई दे रहा है सैलून पर बहुत सारा समान भी दिखाई दे रहा--

कुर्सी काकलर सैलून की दीवार येलो कलर की दिखाई दे रही --

और यहां पर एक पर्दा भी लगा हुआ दिखाई--

यहाँ पर एक भीगे सड़क भी दिखाई दे रहीं हैं।

को भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बाइके --

और यहां पर कुछ जेंट्स विलेज दिखाई दे रही हैं यहां पर जेंट्स के हाथों में दो वल्कि नजर आ रही है।

यहां पर बहोत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है यहां फर्श मार्बल का दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है यहां पर एक--